बच्चे कुछ पेट वगैरा की सामग्री लेकर कुछ काम कर रहे हैं शायद वह पेंटिंग कर रहे हैं।

और कुछ सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा भी है।

यहां पे मुझे एक ट्रेन का इंजन भी दिख रहा है।

जो की इलेक्ट्रिक पोल है साथ ही यह ट्रेन व्हीकल इलेक्ट्रिक वाला है इन वायरो में करंट बह रही है।

जिसमें पुरानी सभ्यता वाली चीजे जिसे--

भीड़ में मुझे आदमी औरत बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं साथ ही यह एक गलीयारा है।

यह किसी मंदिर के बाहर का दृश्य है।

साथ ही दीवार के ऊपर दो तितलियों के प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहे हैं जो की पेंटिंग है।

इनमें से एक व्यक्ति ने हल्के पर्पल कलर का पोशाक पहना है तथा दूसरे में वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

सामने की तरफ एक छोटा सा मंदिर भी मुझे दिख रहा है।

जो कि शायद कोई बैंक हो सकती है।

फोटो किसी बिल्डिंग के बाहर से लिया गया है।